यहां पर कुछ रिबन की डेकोरेशन कर रखी है।

यहां पर एल_सी_डी भी दिखाई दे रही है।

अमरूद का रंग हरा है यहां पर छोटी घास भी खड़ी हुई है।

यहां पर कुछ काले कलर के पोर्ट भी रखे हुए हैं।

यहां पर पंखे भी लगे हुए दिखाई देते हैं। यहां पर कलेंडर भी लगा हुआ है। यहां पर कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे र --

और आस पास पेड़ भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर तीन आदमी और दो औरत बैठी हुई हैं जिनके मुंह नहीं दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर शादी की डेकोरेशन हो रखी है।

यहां पर कुछ दुकानें है दिखाई दे रहे हैं एक दुकान के बाहर एक्टिवा खड़ी हुई है।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

यहां पर ब्रेड भी दिखाई दे रहे हैं। यहां पर एक प्लास्टिक का डब्बा भी रखा हुआ है।

इसी पर सफेद और लाल कलर का रंग हो रखा है यहां पर टावर भी दिखाई देता है।

यहां पर एक दुकान है दुकान में कुर्सी भी रखी हुई है कुर्सी का रंग काला है।

यहाँ ऊपर लकड़ी का स्टैंड भी खड़ा हुआ है।

और यहां पर गुब्बारें भी लगे हुए हैं और यहां पर इमरजेंसी बोर्ड भी लगा हुआ है जिस बोर्ड पर चित्र बने हैं।

यह एक मैदान दिखाई देता है जिसके चारों ओर से बाउंड्री हो रखी है।

और टावर भी दिखाई देता है और हरे कलर का टैंकर भी दिखाई दे रहा है।

यह एक बहुत बड़ी दुकान है जिसमें रेडीमेड कपड़े रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कुछ कपड़े स्टैंड पर टंगे हुए हैं।

यहां पर बिजली के तार भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर तेल की बोतलें रखी भी दिखाई देती है और कुछ पारले जी भी रखे हुए हैं।

यहां पर एक गट्टा भी रखा हुआ है जिसका रंग सफेद है।

यह एक दुकान है जिसमे फिटिंग हो रखी है।

यहां पर गत्ता बॉक्स भी रखे हैं जिनके अंदर सामान रखा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे कुर्सियां रखी हुई दिखाई देती है।

और मैज भी रखी हुई दिखाई देती है।

जिनका मुंह दिखाई नहीं दे रहा है। दुकान के बराबर में एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है और वहां पर एक व्यक्ति भी बैठा हुआ है।

स्टूल पर एक मूर्ति रखी हुई है मूर्ति के आगे एक चिराग भी जला हुआ है।

यह एक लाइब्रेरी रूम है जिसमें कुर्सियां भी रखी हुई हैं।

यहां पर एक कार खड़ी हुई है कार का रंग सफेद है।

यहां पर कुछ पेड़ भी खड़े हुए है यहां पर मीटर बोर्ड भी लगा हुआ है।

यहां पर एक घर में एक बाइक भी खड़ी हुई है।

यहां पर मदर इंडिया पब्लिक स्कूल लिखा है स्कूल के बराबर में एक घर भी दिखाई दे रहा है।

और कुछ कागज भी पढ़ें हुऐ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कुछ फूलों को गोल बनाया हुआ है।

यहां पर एक पॉलिथीन दिखाई देती है पॉलिथीन का रंग सफेद है।

पॉलिथीन के अंदर कुछ कीड़े रखे हुए हैं कीड़ों का रंग भी सुफेद है।